पहाड़ के आजू बाजू कई सारे पेड़ लगे हुए है बड़े बड़े।

यहां एक मिरर दिख रहा है मिरर के पीछे एक आदमी अपने फोन से फोटो ले रहा है ऊपर लाइट जल रहा है।

ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है उसके ऊपर तार लगे हुए है।